यह स-सामने एक सलून खुलाया है जो अभी-अभी नया-नया खुला है।

उसमे बोहुत सारे बलूंस है वहां पर एक आदमी बैठा है बाहर की ओर दो आदमी बैठे है बाहर मे पानी के बोतल है इसकी शटर का कलर बैंगनी है ।

ये सर पे हेलमेट लगाया है उसके पीछे एक बैंगनी कलर की साड़ी पहने एक औरत बैठी हुई है।